बैंगन और भाजी रखे हुए है कई सारी सब्जियां रखी हुई है।

अ तरफ कुछ व्यक्ति पैदल चल रहै है।

सामने एक खाली सुनसान मैदान है मैदान के पीछे --

हरे कलर की ग्रील के उपर हाथ टिका के खड़ा हुआ है एक लड़का जिसमें से चश्मा लगाया है एक हंस रहा है।

कंधे पे बैग टांग के --

पानी के पीछे हरी - हरी घास और पेड़ दिखाई दे रहे है।

गले में मफलर डाल के बैगनी कलर की शर्ट पहने एक लड़का सेल्फी ले रहा हैं ।

पीछे एक घर के सामने ऊपर --

छतो पे चढ़के भी बहोत सारे लोग उसे देख रहे --

सामने एक ऊँचा लम्बा पहाड़ है पहाड़ के सामने पेड़ लगे हुए है पेड़ के सामने रोड है रोड के ऊपर--

इसका ऊपरी हिसा सिरा तिकोना साइज़ का हैं।

सामने एक दूध जैसा बहता हुआ झरना हैं पानी का--

सामने शिवजी की आधी बनी हुई मूर्ति हैं।

एक दुकान है दुकान के अंदर कई सारी चेयर कुर्सियां और फल - फुल दिखाई दे रहे है उसके बाहर एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है।

उसके पीछे पेड़ -पौधे लगे हुए है एक ईमारत बनी हुई है जिसके ऊपर से लाइटे लटक रही हैं ।

यहाँ इमारत बन रही है जिसके सरिया गाड़े हुए है जमीन में ईंटे है।

जा रही है बीचो-बीच एक खम्भा हैं ।